इसमें तीन बस खड़ी है उत्तर प्रदेश की।

एक चल रहा है एक बैठा है एक स्कूटी खड़ी है स्प्लेंडर बाइक है।

लोग फोन चला रहे हैं तीन व्यक्ति खड़े हैं।

उसका जो है हमारा क्रिसमस का चिन्ह लि लिखा है एक स्टार है रेड कलर का--

एक व्हील मशीन खड़ी है व्हील चेयर जिस पर एक रजिस्टर रखा हुआ है।

और एक गमला लगा पेड़ लगा हुआ है।

इसमें लाल कलर का स्टूल है और इसमें दो गुड्डे बैठे हैं।

दो व्यक्ति लेफ्ट और राइट में खड़े हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है ये फाइव स्टार लग रहा है देखने में और इसमें व्यवस्था की गई है बैठने की।

और एक टीन का मकान बना हुआ है।